यहाँ पे देखिए आप को बोर्ड दिखाई देगा और देखिए एक ब्रेंच रखा हुआ है ब्रेंच पे व्हाइट कलर का कर्टेन बिछाया हुआ है देखिए दो साथ-साथ आप को चेयर भी दिखाई देंगे और देखिए साइड मे दो गुलदस्ते भी दिखाई देंगे यहाँ पे देखिए बैठने के लिए चेयर है।

ये देखिए यहा पे आपको बहुत अच्छे अच्छी तरीके से लाइट लगी हुई है यहा पे देखिए यहाँ की जो वॉल्स है उसपे देखिए राइ लेफ्ट साइड पे देखिए आप कुछ पिक्चर टंगे हुई दिखाई देंगे ।

अ देखिए जो सीडियों के नीचे का वाला बैकग्राउंड वहा पे देखिए मेरिगोल्ड के फ्लावर्स कितने अच्छी तरीके से लगाया गया है | देखिए जो स्टेज बना हुवा है वहा पर देखिये फ्लावर्स पड़े हुवे है जो बैकग्राउंड वहा पे देखिए रोज़ के फ्लावर्स लगे हुवे है।

यहाँ पे आपको बहुत सारे झूले दिखाई देंगे। देखे ले वो आसमानी झूला भी है यहाँ पे और देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी है कुछ अंकल है कुछ आंटी है देखिए इससे जस्ट बाहर देखेंगे तो कोई साइकिल दिखाई देंगी।

यहाँ पे कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे और देखिए दे यहाँ पे देखिए घर का कलर ब्लू कलर --

यहाँ पे देखिए आप को एक घर दिखाई देगा। इसका कलर ऑरेंज कलर का है देखिये सामने आप को अ पेड़ दिखाई देंगे पेड़ बहुत ही अच्छे लग रहे है और एटलिस्ट यहाँ पे जो नीचे फुव्वारा बना हुआ है वो भी देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में

मशीन कुछ मटीरीअल रखा हुआ है देखिए यहाँ राइट साइड पे देखिए तो आपको एक रोड दिखाई देगी एक रोलर रखा हुआ है यहाँ पे रस्सी टाइप की--

क्योंकि देखिए आप को एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो ब्राउन कलर की है यहाँ पे देखिए जो पूरी ऊपर तक की है इसमे बहुत--

यहा पे देखिए आपको कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे अगल बगल मे | दोनो साइड पे बहुत अच्छे अच्छे घर बने हैं और देखिए यहा पे बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है | यहा पे कुछ बड़े बड़े पेड कुछ छोटे छोटे पेड लगे है | कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे ।